साथ में ये इसकी सुंदरता को बहुत बढ़ा रहे हैं।

और एक बहोत बड़ा दरवाज़ा है जिसमें अंदर की ओर बहोत सारी चीज़े दिखाई दे रही है और उस दरवाजे में शटर भी लगा हुआ है जोकि खुला है।

ग्राउंड में दो लाइट्स भी लगे हुए हैं जोकि सफेद रंग के जल रहे हैं। ऊपर नीला आसमान दिखा रहा है।

कुछ पत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं हरे रंग की और कुछ छोटे छोटे पौधे भी हैं।

यह एक रोड है जिसके किनारे कुछ इ रिक्शास चल रहें हैं। कुछ कार्स खड़ी हुई हैं। कुछ आदमी पैदल की ओर चल रहे हैं। कुछ गाड़ी पे बैठे हुए हैं।

कुछ वायरस भी खिचे हुए हैं खम्बे से लगे हुए --

बोहोत ही सुन्दर लग रहा है और साथ म बोहोत सरे छोटे-छोटे पेड-पोधे हैं जो कि इसको और बोहोत ज्यादा सुन्दर बना रहे हैं।

बड़े-बड़े पेड़ हैं जोकि हरे रंग के है और बहोत ही सुंदर दिख रहे हैं।

और पीछे वाला जो आदमी उसने काले रंग के बर्तन को पकड़ रखा है। बर्तन के ऊपर कुछ नीले रंग का रखा हुआ है।

पीछे की ओर एक दरवाजा है और ऊपर की ओर एक खिड़की है। सामने एक नल लगा हुआ है।

हल्के लाल कलर का है। सामने की ओर एक दीवार है। पीछे की ओर एक मकान है। फर्स का कलर रेड और येलो ग्रीन कलर का है मिक्सअप ।

पीछे की ओर एक पैड है जोकि बहोत ही बड़ा है।

पीछे की ओर काफी सारी बिल्डिंग्स हैं।

मंच के साइड में कुछ साउंड रखे हुए हैं।

इसमें हरी रंग की घास हैं। पीछे की ओर बोहोत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है और बड़े-बड़े पेड़ हैं।

दाहिनी तरफ एक बिल्डिंग है। पीछे की ओर बोहोत सारे पेड़-पौधे हैं जो कि हरे रंग के हैं ऊपर नीला आसमान है जो कि बोहोत ही सुंदर है।

यह एक फिश सेंटर है। जिसका नाम एम.बी.आर फिश सेंटर है। जिस पे एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।